यह कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसपे --

हमें सामने एक बिल्डिंगे दिखाई दे रहीं हैं।

इसके दरवाजे पे बना हुआ है। इस दरवाजे--

साथ में एक झण्डा भी दिख रहा है।

के नीचे जो हैं पीछे की तरफ पेड़ दिख रहे हैं।

जिसमे बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहें हैं।

जिसका दरवाजा गोलाकार में है।

और सोफे लगाए गयें हैं।